यह एक किताबों की दुकान है यहाँ पे कई तरह की अलग-अलग किताबें व कोपिया रखी है।

चौहकी लाल रंग की है।